जुं का हाथदा हम ते थैला अर कांधा एंच बस्ता छा दिखेण लग्यां पार फणी हम ते कुछ बस दिखेण लगीं जुं कु रंग हम ते नीलू अर लाल दिखेण लग्युं पार फणी हम ते कुछ बड़ी बड़ी इमारत दिखेण लगीं।

ये चित्र मा हम ते एक गुफा दिखेण लगीं जू दिखेण से एक मंदिर छा लगण लग्युं।

ये चित्र मा हमते एक मैदान दिखेण लग्युँ जगदु भगण कू ट्रैक छ बण्यू जमणी हमते कुछ नौनी दिखेण लगीं जूनि भगण च लगीं।

ये चित्र मा हम ते एक सड़की दिखेण लगीं जै का किनारा दा हमते कुछ स्कूटी अर बाइक खड़ी छन दिखेण लगीं वफणा कुछ हेलमेट दिखेण लग्यां।

अगाड़ी फणा हम ते कुछ लोगन दिखेण लग्यां जूं का कांधा निस बस्ता छन टांग्यां ओर पोर हम ते रेलिंग दिखेण लगीं बिचम गेट दिखेण लग्युं अर अगाड़ी एक बड़ी इमारत दिखेण लगीं।

वेका नीसाण फण कुछ पूजा पाठु समान रख्युं अगाड़ी हमते माता की बड़ी अर सुन्दर मूर्ति दिखेण लगीं पैथर एक बड़ु चक्रकर दिखेण लग्युं जैपर सोना कू रंग च लग्युं अगाड़ी फणा कुछ लोग दिखेण लग्यां।

उंका हाथदा कुछ कागज छ पकड़ियाँ जू दिखेण से सर्टिफिकेट च लगण लग्यां पेथर फणा हमते कुछ मुन्स्यार खड़ा दिखेण लग्यां पेथर फणा हमते कुछ खम्बा दिखेण लग्यां फंडे बिटि एक बैरवान दिखेणी।

जु का हाता हमते थैला दिखेण लग्यां काद इच हमते बस आ दिखेण लग्यां यख फणी हमते द्वि बड़ी अर हरी बस छन दिखेण लगी जु का भित्तर कुछ लोग चढ़ना लगया और कुछ लोग बैठ्या छ दिख्येणा।

फुंडे बिटि हम त दिखेण लग्यां जून हाथों तसला छन पकड़यां और कन्नी छ पकड़ीं। पैथर पर हम त कुछ कूड़ा छन दिखेणा लग्यां जफुन कुछ डाला भी छन।